और यहाँ पे हम कुछ छोटे बड़े हरे रंग की पेड़ पोधे भी यहाँ पे हम देख सकते है।

इस जगह के आसपास हम बहोत सारे छोटे बड़े पेड़-पोधा देख पा रहे है ।

यहाँ पे हम एक बड़ा-सा पोस्टर लगा हुआ है देख पा रहे है।

यहाँ पे हम एक बिल्डिंग देख पा रहे है।